एक स्कूल है जहा पर बहुत सारे बेंचेस लगे हुए हैं और वहा पर बच्चे पढ़ाई कर रहे है पेंटिंग वेग्य्रह कर रहे हैं कुछ लोहे की बेंचेस हैं बहुत बड़ी-बड़ी विंडोज़ लगी हुई हैं।